सामने एक लाल रंग की कुर्सी भी--

पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

नी लाल है और सफेद है।

इस चित्र में बहुत से मजदूर--

मेज ए_सी टी_वी एक गमला--

यह चित्र एक नर्सरी का है जिसमें बहुत सारे पौधे लग रखे हुए हैं।

यह चित्र चंडीगढ़ गुरुद्वारा--

यह चित्र किसी की जगह का है जिसकी दीवार बहोत बड़ी पत्थर की बनी हुई है।

उसे कमल के फूल के रूप में काटा गया है।